बैनर वगैरा लगा हुआ है पंखा है दो अं दो--

जिम करने की जगह है एक लड़का जिम कर रहा है डिस्प्ले लगी हुई है शीशे का है लाइट है पंखा है ए_सी है स्विच बोर्ड है।

हरियाली घास है काफी एक सारे पेड़ है बिजली का तार है बिजली के खंबे हैं एक--

और ए_टी_एम व जो डिस्प्ले बोर्ड है शो नजर आ रहा है ए_सी इसमें दो लगी है लाइट नजर आरी है कैम--

दो जेंट्स है एक लेडीज है और डॉक्टर लेडीज है पीछे का तोलिया भी उसका नीला है कुर्सी पर लेडिस बैठी है काउंटर है।

केम है पानी बाहर किया जा रहा है एकदम पानी मिट्टी वाला पानी है। ऊपर पूल बने हुए हैं।

पैदल पैदल और एक दो तीन चार जने जो खरे है जो--